ये कुछ पन्नियों में छोटा सा सामान रखा है लड्डुओं के जैसा।

बहुत सारे कलश उपर की तरफ लगे हैं कुछ झंडे लगे हैं।

दो फोरव्हीलर खड़ी हुई है कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

काफी सारी ड्रमें रखी हुई है दो तीन आदमी तसला रखे हुए सिर पे है।

एक औरत काफी दूरी पे दिखाई पड़ रही है कुछ बच्चे खड़े हुए हैं।

छोटी छोटी हरी हरी घास भी दिखाई पड़ रही है बहोत सारे बड़े बड़े काफी दूरी में फैले हुए पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक पूल दिखाई पड़ रहा है पक्का ऊपर की तरफ रेलिंग है।